यह एक सैलून है जिसमें कि एक नाई एक आदमी के बाल काट रहा है यहाँ पर काफी सारी क्रीमे रखी हुई हैं। यहाँ पर स्प्रे उस्प्रे --

और स यहाँ पे जाली लगी हुई हैं और आस-पास मकान भी दिख रहे हैं जोकि कम दिख रहे है और सूरज बिल्कुल येलो दिख रहा है।

यहाँ पर यह एक मार्केट की फोटो है | इसके सामने एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शुद्ध प्लस पान मसाला | यहाँ पर काफी सारी बाइक स्कूटी गाड़ी जा रही है।

ये एक बिल्डिंग की फोटो है जिसके आस-पास पेड़ लगे हुए हैं काफी सारे और नीचे एक काफी सारे वाहन खड़े हुए हैं जैसे कि बाइक्स खड़ी हैं स्कूटी खड़ी है फोर व्हीलर वाहन खड़ी हुई है।

शायद लक्ष्मी जी की गणेश जी की बोहोत सारी फोटो लगी हैं और एक माता जी आई हैं दर्शन करने।

यह एक पार्क है जिसमें कि एक तरफ सीढ़ी रखी हुई है स्लाइड के लिए और दूसरी तरफ स्लाइड होकर नीचे जाते हैं और यहाॅं पर एक झूले रखे हैं। झूले पर झूलते हैं लोग।

यह एक वॉटर पार्क की फोटो है जो कि काफ़ी बड़ा वाटर पार्क है इसमें काफ़ी त- सारी लाइट्स लगी हुई हैं और काफी सारे एक वोल्केनो जैसा भी बना हुआ हैं पानी का।

जिसको कंट्रोल करना पड़ता है ये कंट्रोल नहीं होता और एक बीच में झूला है जिसको कंट्रोल करना पड़ता है और एक हरी -हरी छोटी- छोटी घास बोहोत अच्छी है।

और वाइट कलर में ड्रेस लैंड लिखा हुआ है।